घर है इस घर में काफी सारे कमरे है इस घर में शीशे कि गेट लगी हुई है इस घर को पेंट किया गया है।

यहाँ पर एक राधा-कृष्ण जो साथ में हैं उनकी फोटो है इस फोटो पर एक माला भी है यहाँ काफी सारे फूल भी हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल भी --

यहाँ पर काफी आदमी मछली को ख-लेने आये है यहाँ पर बड़े एवम छोटे अनेक प्रकार के मछली है यह मछली काफी सुन्दर दिखाई --

इस घर में ल-पूरा लाइट से सजाया गया है इस घर के गेट के सामने तीन आदमी खड़े है।

इस घर में एक आदमी खड़ा है। वो मुह पर मास्क लगाया हुआ है। इस घर में रैक भी है।

यहाँ पर काफी बच्चे बड़े आकर नहाते है स्विमिंग करते है इस स्विमिंग पूल के किनारे बड़े बड़े घर भी है बड़े बड़े पेड़ --